यहाँ पाँच नर्तिका है जो नृत्य कर रही है शिव जी के गाने पे और पीछे शिव जी का बहुत ही बड़ा बना हुआ है।

जो जिसमे कृष्ण ही बांसुरी बजा रहे हैं और राधा जिनका हाथ पकड़ी हुई है | ये यह गेंदे के फूल से बहुत सारे फूलो से सजा हुआ है |

और एक आदमी ने बैग पहना है और एक आदमी ने हेलमेट लोग यहाँ अपने गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए खड़े हैं।

यहाँ एक अपाची की बाइक खड़ी है जिसके ठीक सामने एक पेट्रोल पम्प है।

उसके बगल में एक ट्रेक्टर है जो एक रोड बिलकुल खाली है और यहाँ पे ट्रक भी खड़ी है |

झूल रहें हैं झूला पे और आनद ले रहें हैं।

छपरा बना रहे हैं | यहाँ एक यहाँ लकड़ी का कुछ बना रहे है।

यह एक दूध का दुक यह एक सुधा दूध का दुकान है।

यहाँ से लोग दूध खरीदते हैं और घर ले जाके पीते हैं | दू यह यहाँ बहु यहाँ।

यह एक दुकान है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलती है |

यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है |

इस का गेट काले कलर का है |

की चीज़ है यहाँ एक जग है | यहाँ पे बहुत सारी शैम्पू है | चिप्स है।

यह ट्रक व वाइट उजर कलर की है |